एक मैदान का फोटो है जिसके जिसमें एक बिल्डिंग बनी है पीले कलर की इसमें दो गेट दिख रहे हैं।

ये एक ग्राउन्ड का फोटो है जिसमे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है जो येलो कलर की है और उस बिल्डिंग मे एक जिने भी है जिसमे बहुत सारे लोग बैठे है और ग्राउन्ड मे बहुत सारे लोग खेल रहे है।

एक स्टेडियम का फोटो है जिसके स्टेडियम के सामने बहुत सारी घास है।

साइड में एक ब्लू कलर का बैनर भी लगा हुआ है।

यह गार्डन के अंदर का फोटो है जिसमें एक मेंढक की मूर्ति बनी हुई है मेंढक की मूर्ति नीले और सफेद कलर की है।

और कलरफुल यहां पर फूल भी लगे हुए हैं जैसे की गुलाबी नीले जामुनी रेड और सफेद आस पास बहुत सारे पेड़ भी हैं और आसमान भी दिख रहा है।

यह एक ग्राउंड के अंदर का फोटो है जिसमें फिशल पट्टी लगी है और झूले लगे हुए हैं फिशल पट्टी गुलाबी नीले कलर की है और आस-पास पेड़ भी लगे हुए हैं आसमान इसमें दिख रहा है और पीछे एक बस भी खड़ी है जो पीले कॉलर की है।

बस के साइड मै एक पेड़ लगा हुआ हैऔर पेड़ बहुत अच्छा है।

यह ग्राउंड का फोटो है जिसमें बहुत सारे लोग हैं यहां पर सीढ़ियां बनी है जिस पर भी लोग बैठे हुए हैं आस पास बिल्डिंग से जो सफेद कलर की है एक नीले कलर की है।

एक बिल्डिंग दिख रही है जो गोल्डन कलर की है और आसमान भी इसमें दिख रहा है और एक जाल भी है।

आसमान भी इसमें दिख रहा है साइक में एक लोहे का पाइप भी लगा हुआ है।

मैकेनिक की शॉप का फोटो है इसमें बहुत सारी कर खड़ी हुई है एक कर थोड़ी ऊपर है जिसमें काम चल रहा है दो आदमी खड़े हुए हैं जो ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं दो टार नीचे पड़े हैं।

रस्सी भी बंधी हुई है पीछे एक घर भी दिख रहा है जो येलो कलर का है आसमान भी दिख रहा है ।

एक एल.इ.डी लगी हुई हैऔर लाइटे दिख रही है यहा पेऔर एक आदमी हैजो वाइट कलर की टी-शर्ट पहना है एक आदमी गाड़ी पर बेठा है ओर रेड कलर की शर्ट पहना हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे वायर्स भी दिख रहे है माइक लगा हुआ है ब्लू कलर की लाइटए है और पंखा भी दिख रहा हैं।